यहाँ पर बीच में झोपड़ पड़ा है और बारिश आए तो हम इसके अन्दर बैठ --

पक्की सड़क है। एक ज्यादा चल रही है एक नहीं चल रही है। दुसरी साइड को खाई है।

काफी खुबसूरत है देखने में और हम इसमें देख रहे है। ये यहाँ पर काफी लोग रह सकते है और यहाँ में साइड में इसके एक झोपड़ --